यह एक चित्र है जो मंदिर दिखाई दे रहा है। उसमें एक--

और सामने एक टेबल भी है उसमें एक झंडा भी लगा हुआ--

और मशीन के अंदर दो ग्रीन कलर के बोर्ड दिख रहे हैं और सामने--

यह बहोत बड़ी नदी दिख रही है उसमें दो भैया --

जो मस्त खाली मैदान जैसा लग रहा है।